वहाँ सामने कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है जो की आपस मे कुछ चर्चा कर रहे है कुछ लोग जा रहे है कुछ लोग ऑटो मे बैठे हुए है यहाँ पे एक ऑटो दिख रहा है जो की काले कलर का है सामने बहुत बड़ा मैदान भी है ।

यहाँ पर कुछ लोग है जो की पूजन कर रहे है और एक पंडित जी बैठे है जो की माइक मे बोल रहे है यहाँ पर शंकर जी की माता जी की कार्तिक भगवान गणेश जी महाराज हनुमान जी की मूर्ति है ऊपर की साइड मे कुछ लाइट लगाई गई है सामने की ओर मे स्टेज बनाया गया--

ऊपर कुछ लड़के दिखाई दे रहे है और कुछ लड़किया भी है जोकी कुछ बना रहे है देखने पर लग रहा है की इन्हे प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है वह काम पूरा कर रहे है सामने एक लेडी खड़ी हुई है।

दुलहन जो है मुह ढके हुए है सामने की और मे एक लेहंगा पहने हुए है रेड कलर का और दूल्हा जो है वो दूल्हे की यूनिफॉर्म पेहने हुए है पीछे की और मे स्टेज जो है काफी फ्लावर से सजाया गया है अच्छे लग रहा है।

सामने की और कुछ पेपर डले हुए है कुछ प्लेट्स डली हुई है एक धागा लटका हुआ है जो बजाने के लिए यूज़ किया जाता है सामने घड़ी लगी है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है आदमी जो है मास्क लगाए हुए है और उसने हाथ मे ग्लव्स भी पहने हुए है सामने जो है कुछ पाइप से सुधार रहा है और एक मशीन रखे हुए है।

सामने की ओर मे एक स बोर्ड टंगा हुआ है जिसपे लिखा गया है सर्थिक फाउंडेशन और सामने की ओर मे एक टापरा डाला हुआ है जिसमे लकड़ी का बनाया हुआ छत है।

यहाँ पर कुछ लड़के दिखाई दे रहे है लड़के जो हैं कुछ प्रोजेक्ट कार्य कर रहे है देखनें पर लग रहा है यहाँ कोई प्रतियोगिता चल रही है।

सामने एक डेक्स बनाई गई है डेक्स के ऊपर कुछ कागज रखे गए है जिसमे कुछ कटी-कटी डिजाइनस दी गई है ऊपर पंखा लगा हुआ है जो कि बंद है एक दरवाजा भी है।

पीछे की ओर मे एक पर्दा लगा हुआ है जो काला कलर का है नीचे की ओर मे फर्श है जिसमे टाइल्स लगे हुए है पहली लड़की जो है उससे डांस करते हुए बन नही रहा है।

यहाँ पर एक माताजी की मूर्ति है देखने पर लग रहा है की नवरात्रि चल रही हैं और माता जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है माता जी जो हैं लाल कलर की चुनरी ओढ़े हुए है।

यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं लड़कियाँ जो हैं कुछ कार्य कर रही है यानि की यहाँ पर रंगोली बना रही है उन्होंने बहुत सुंदर रंगोली बनाई गई है।